और एक-एक पास में दुकान खुली भी है और यहाँ सामान रखा हुआ है धुप दिख रही है पेड़ के पत्ते दिख रहे है।

यह केनरा बैंक लिखा हुआ है साइड में स्टोर है स्टोर में कपल - लड़कों के टी-शर्ट हैं सामने डंडे दिख रहे हैं।